और किनारे तरफ काफी घांस-फूस वाला एक सपाट मैदान दिखाई दे रहा है।

खेल के मैदान में बीच में पिच दिखाई दे रही है पिच में यहाँ पे सफ़ेद कलर की बॉर्डर बनी हुई है और बीच में तीन स्टंप रखे हुए है।

सामने किनारे तरफ कुकीज के कुछ डिब्बे रखे दिखाई दे रहे है।

ये अन्डरगार्मन्ट के बॉक्स हैं जिनमें अलग-अलग कंपनी और अलग-अलग ब्रांड की बनियान और अन्डरवियर रखी हुई हैं।

इसमे काफी सारे पत्ते लगे हुए है ऊपर की तरफ भी कुछ लीची और पत्ते लटके हुए दिख रहे है पीछे तरफ एक झाड़ू दिखाई दे रही है।

सामने तरफ एक बड़ी सी गोल्डन कलर की मूर्ति दिखाई दे रही है मूर्ति के नीचे एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है और किनारे तरफ एक पेटी रखी हुई है जिसमे कि ताला लगा हुआ।

गार्डन है बीच में एक पूल दिखाई दे रहा है जिसमें के अभी पानी नहीं है किनारे तरफ घास फूस लगी हुई है।